यहां पे बहोत सारे मशीना है नीचे वायरिंग लगेगा सामान पड़ा हुआ है।

हरा हरा कंजर भी जमा हुआ है और नीचे फर्शें भी बिछाए गए हैं।

ये एक क्रिकेट ग्राउंड है और यहां पे लेडिस बैट और हेलमेट और पैड्स व है।

बहोत सारे लोग बड़े बूढ़े जवान बच्चे सभी लोग रोड के ऊपर खड़े हुए--

और यहां पे एक लड़का पर्पल कलर का शर्ट और हाथ में घड़ी चि--

और आजू बाजू बड़े बड़े पेड़ ऊपर आसमान हरी हरी घास भी उठी हुई है नदी के पास--

और लेफ्ट साइड में बड़े-बड़े शेल्फ बनाए गए हैं और यहां पे फुरसत में बहुत सारा सामान रखा हुआ है और यहां पे ऊपर --

यां पे नीचे भी एक हॉल है अलग-अलग टाइप के नीचे और टाइल बिछाए गए हैं और यहां सामने हरी हरी घास भी उगी हुई है यहाँ--

इसके लेफ्ट साइड में थैला है और काले कलर का पाइप भी है और--

यह एक रेस्टोरेंट है ओम साई बिखा -नेरी रेस्टोरेंट यहां पे ऊपर पानी के बोतल भी रखे गए ।

लेफ्ट साइड में और फ्रिज भी और उसमें बहोत सारा सामान फ्रिज बिसलेरी का बॉटल पेप्सी थम्स अप पड़ा हुआ--

और बाहर बहोत सारे गाड़ियों को पार्ड किया गया है और यहां पर आदमी के हाथ में थैली और बैग डाले हुए हैं आदमियों--

आजू बाजू बड़े-बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं और यहां पे लाइट के खंबे भी हैं।

यहां पे नीचे रोड भी दिख रही है और पीछे लाइट के--

खंभे भी और वहां पे लोग भी दिख रहे है और यहां पे येलो कलर पट्टी को किया गया जैसे तैसे --

पेपर भी लगा वगा पीछे पहोंच है बहोत सारे पीछे व्यक्ति भी खड़े हुए बैठे हुए--

सामने आने जाने के लिए रस्ता भी है और यहां पे लाइट के खंभे और फोकस भी लगाए गए हैं यहां।

ये घोड़ों पर चलाया जा रहा है ऊपर अदमियां भी बैठे बच्चे बैठे हुए--

यहां पे भी किया गया है ऑरेंज कलर की जे_सी_बी भी खड़ी हुई है और बहोत सारी मठ्ठी भी--

और ऊपर आसमान में बादल भी दिख रही है और यहां पे ये ओपन टाइमिंग और उसकी--

यहां पे सामने रस्ता है और यहां पे पार्ड भी है उसमें बहोत सारे झूले नीचे मिट्टी पड़ बडे़ आजू बाजू--

और यहां पे छोटे छोटे मशीनें को टेबल पे रखा हुआ और उसके पास जो थैला भी है और यहां पे प्लास्टिक का डब्बा भी है और उसमे ढक्कन पिंक है।

कलर कलर के कटोरी भी है और रेड और ब्लू कलर के और स पीछे एक खिड़की भी दिख रही है।